जो एक पुराने किले में जा रहा है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर--

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

मुझे एक लाइट दिख रही है।

जैसे कि मैं करण सिह यहां पर--

जैसे मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं।

मंदिर के ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

एक मशीन दिख रही है।

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

यह एक बहुत बड़ा पानी का डैम दिख रहा है।

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं--

यहां हरियाली वी--

उसमें कुछ बोल --

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

जैसे की मैं करन सिंग यहां पर देख पा रहा हूं।

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

यहां बहुत सारी बाइक कार खड़ी हैं।

जैसे कि मैं करण सिंह यहां पर देख पा रहा हूं।

यहाँ पर एक तरफ गाय और दूसरी तरफ बछड़े हैं।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं।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

यहां पर एक बड़ी सी टेबल लगी है।

राखी दिखाई दे रही है।

राजा भोज की एक मूर्ति देख पा रहा हूं।